एक शॉप है जहां पर फूल फुलवारी है पीछे ग्रीन कलर की दीवार है एक छोटा-सा फैन रखा है जो स्टूल रखा है --

कुछ टावेल रखे हुए हैं और कुछ फूल-फुलवारी है सब मे देख रहा है ऐसा कुछ प्रतीत होता --

एक स्टपनेर पड़ा है एक पेन पड़ा है एक काजग पड़ा है।